फर्स्ट जावा प्रोग्राम फर्स्ट जावा प्रोग्राम के परिचय पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत हैं
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक सरल जावा प्रोग्राम बनाना
प्रोग्राम कम्पाइल करना
प्रोग्राम रन करना और जावा में अनुकरण किए जाने वाले नामकरण के चलन के बारे में
यहाँ हम उबन्टु वर्जन 1110 और जेडीके 16 का उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपके सिस्टम पर जेडीके 16 संस्थापित होना जरूरी है
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी दिखायी गयी वेबसाइट पर जाएँ
ठिक है अब अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखें
उसके लिए आपको टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी
मैं मेरे टेक्स्ट एडिटर के रूप में गेडिट का उपयोग कर रहा हूँ
टेक्स्ट एडिटर में हम पहले हेलोवर्ल्ड क्लास बनाएंगे
अतः टाइप करें क्लास हेलोवर्ल्ड हेलोवर्ल्ड क्लास का नाम है
और ओपन कर्ली ब्रैकेट
एन्टर करें
और क्लोज कर्ली ब्रैकेट
इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच का कोड़ क्लास हेलोवर्ल्ड से संबंधित होगा
अब ऊपर सेव आइकन पर क्लिक कर फ़ाइल सेव करें
लगातार फ़ाइल सेव करना एक अच्छा अभ्यास है
अब सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
आपको अपनी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है उस स्थान को ब्राउज़ करें
यहाँ मैं होम डिरक्टरी में एक फोल्डर बनाऊँगा
इसे डेमो नाम दें और enter दबाएँ
फिर इस फोल्डर के अंदर हम फ़ाइल को सेव करेंगे
नामे टेक्स्ट बॉक्स में क्लास का नाम टाइप करें
जावा में क्लास और फ़ाइल का नाम एकही होना चाहिए
याद रखें कि हमने हेलोवर्ल्ड क्लास बनाया है
इसलिए हम हेलोवर्ल्ड डॉट जावा के रूप में फ़ाइल सेव करेंगे
जावा फ़ाइल को डॉट जावा फ़ाइल एक्सटेंशन दिया गया है
फिर सेव बटन पर क्लिक करें अतः अब फ़ाइल सेव हो गई है
क्लास के अंदर हम मैन मेथड लिखेंगे
अतः टाइप करें160 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पेरेंथीसेस में पेरेंथीसेस स्ट्रिंग एआरजी स्क्वैर ब्रैकेट्स
मैन फंक्शन प्रोग्राम के शुरुआती प्वॉइन्ट को चिन्हित करता है
हम आने वाले ट्यूटोरियल में पब्लिक स्टैटिक वॉइड और स्ट्रिंग एआरजी का वर्णन करेंगे
फिर से ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ और क्लोज कर्ली ब्रैकेट
इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच का कोड़ मैन मेथड से संबंधित है
अब हम टर्मिनल पर लाइन प्रदर्शित करने के लिए एक कोड लिखेंगे
अतः मैन मेथड के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरेंथीसेस semi कोलोन लाइन प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट है
सेमीकॉलन का उपयोग लाइन को समाप्त करने के लिए किया गया है
अब जावा को आदेश देंजो प्रिंट करना है
अतः पेरेंथीसेस के अंदर डबल क्वोट्स में टाइप करें माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम एक्सक्लेमेशन मार्क सेव आइकन पर क्लिक करके फ़ाइल सेव करें
टर्मिनल पर जाएँ
सुनिश्चित करें कि आप उस डिरेक्टरी में हैं जहाँ आपने अपना helloworldजावा सेव किया है
याद रखें कि मैं अपनी होम डिरेक्टरी में हूँ
अतः टाइप करें सीडी स्पेस डेमो और एन्टर दबाएँ
एलएस हम देखते हैं helloworldजावा फ़ाइल डेमो फोल्डर में मौजूद है
इस फ़ाइल को कम्पाइल करें अतः टाइप करें जावाक स्पेस हेलोवर्ल्ड डॉट जावा और एंटर दबाएँ
यह हमारी बनाई हुई फ़ाइल को कम्पाइल करता है
ठीक है हम देख सकते हैं फ़ाइल बिना किसी एरर के कम्पाइल की गई है
हम देख सकते हैं helloworldक्लास फ़ाइल बन चुकी है
यह फ़ाइल कहीं भी रन हो सकती है
किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर
साथ ही हमें जावा कम्पाइलर की भी जररूत नहीं है
इसलिए जावा का ठीक ही वर्णन किया गया हैएक बार बनाएँ और कही भी रन करें
अतः सफल कंपाइलेशन के बाद कमांड का उपयोग करके प्रोग्राम रन करें
जावा इस बार सी नहीं स्पेस हेलोवर्ल्ड और डॉट जावा नहीं एक्सटेंशन और एंटर दबाएँ
आपको माय फर्स्ट जावा program
आउटपुट मिलेगा
अतः हमने अपना पहला जावा प्रोग्राम लिख लिया है
एडिटर पर वापस से जाएँ
अब semi कोलोन मिटाएँ जो स्टेटमेंट के आखिरी में है
सेव आइकन पर क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ
जावाक हेलोवर्ल्ड डॉट जावा कमांड रन करें
कम्पाइलर एक एरर देता है
यह दर्शाता है आ सेमी कोलोन इस एक्सपेक्टेड ओन थे फिफ्थ लाइन अप एरो एरर स्टेटमेंट दर्शाता है
एडिटर पर वापस जाएँ
जावा में सभी स्टेटमेंट्स सेमी कॉलन के साथ समाप्त होते हैं
अतः पाँचवी लाइन पर जाएँ और सेमी कॉलन जोड़ें
सेव आइकन पर क्लिक करें
यह जरूरी है कि कम्पाइल करने से पहले फ़ाइल सेव करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ
जावाक हेलोवर्ल्ड डॉट javaका उपयोग करके फ़ाइल कम्पाइल करें
जैसे कि हमने देखा बिना किसी एरर के फ़ाइल सफलतापूर्वक कम्पाइल हो गई है
अब जावा हेलोवर्ल्ड कमांड का उपयोग करके प्रोग्राम रन करें और हम आउटपुट देखते हैं माय फर्स्ट जावा program
इस तरह से आप जावा में एरर्स को संभालें
जैसे जैसे आगे बढेंगे हम एरर्स के बारे में अधिक सीखेंगें
अब हम देखेंगे कि जावा में नेमिंग कन्वेन्शन्स क्या हैं
क्लास नेम कैमेलकेस में होना चाहिए
जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नए शब्द की शुरूवात एक अपरकेस से हो
उदाहरण160 क्लास हेलोवर्ल्ड क्लास चेसगेम इसलिए हेलो का ह और वर्ल्ड का द्व अपरकेस में है
इसी प्रकार चेस और गेम के सी और जी क्रमशः अपरकेस में हैं
मेथड नेम मिक्स्डकेस में होना चाहिए
जिसका अर्थ है कि पहला शब्द लोअरकेस से शुरू होना चाहिए
और सभी नए शब्द अपरकेस के साथ शुरू करने चाहिए
और मेथड नेम एक क्रिया होनी चाहिए
उदाहरणस्वरूप showString main goToHelp
यहाँ शो का एस लोवरकेस में है जब कि स्ट्रिंग का एस अपरकेस में है
वेरिएबल नेम डिजिट्स के साथ शुरू नहीं होने चाहिए
हम अपने क्लास मेथड या वेरिएबल नेम के लिए कीवर्ड्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप160 कीवर्ड्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे पब्लिक प्राइवेट वॉइड स्टैटिक और कई अधिक
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने एक सामान्य जावा प्रोग्राम लिखना कम्पाइल करना और रन करना सीखा
साथ ही हमने जावा में अनुकरण किए जाने वाले नेमिंग कन्वेन्शन्स देखें
स्वमूल्यांकन के लिए जावा फाइल नामे एंड क्लास नामे शोल्ड बीई सामे प्रिंट करने के लिए एक सरल जावा प्रोग्राम लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारें में अधिक जानने के लिए httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial पर उपलब्ध ट्यूटोरियल को देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य अब आप से विदा लेती हूँ
धन्यवाद